इस इमेज मे मेरे को एक केक दिखाई दे रिया है जिसमे दिल के टुकड़े लगे हुये है।

एंड मछलियों की एक एक आँख दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मेरे को एक सड़क दिखाई दे रही है जिनके साइडो में छोटे-छोटे से नारियल वृक्ष दिखाई दे रहे हैं।